यहाँ एक चर्च है जो लाल और सफेद रंग का है यहाँ बच्चे बुड़े औरते सभी आए हैं ।

यहाँ एक झूला नजर आ रहा है जो गोल-गोल घूमता है जो कि हरे नीले और --

इस जंगल में बेहत सारे हिरण भी नजर आ रहे है।

लाइट के खंभों के पास बड़ी - बड़ी सी बिजली की तारे लगी हुई है और रोड के आइट साइड में बहुत सारे दुकाने हैं और घर हैं।

के बाल बनाने की तस्वीरें और साथ ही साथ अन्य मेकअप की तस्वीरें लगी हुई हैं।